इस रूम के फर्श का कलर सफेद है ऊपर लाइटे और कैमरे लगे हुए हैं।

जो सोफे पर बैठे हुए है उनके सामने एक टेबल रखी हैं जोकि भूरे रंग कि --

इस तस्वीर में एक ढाबा दिख रहा--

आस पास बहोत सारे पौधे घास और झाड़ियां बनी हुई--

इस तस्वीर में जिम को दिखाया है आस पास बहुत सारे डंबल रखे हुए --

जिसमें खेलने के बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक गहने की शॉप --

इसकी दीवारों का कलर सफेद है और पिलर लगे--

ये स्कूल काफी बड़ी है और इस स्कूल की दीवार का रंग सफेद है और बहुत सारी --

इस तस्वीर में कुछ कुर्सियां है जे जो लोहे की बनी हुई--

इस तस्वीर में पार्क में बनी एक सीढ़ियों को दिखाया है।